यहाँ बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है नदी का पानी काफी सारी जगह में फैला हुआ दिखाई दे रहा है पानी हरे कलर में दिखाई दे रहा है। नदी --

एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है नदी का पानी काफी सारे जगहे में फैला हुआ दिखाई दे रहा है पानी हरे कलर में दिखाई दे रहा है नदी में बहुत सारी बोट नाव --

ये मंदिर भी दिखाई दे रहा है मंदिर के सामने एक काफी बड़ा तालाब भरा हुआ दिखाई दे रहा है तालाब का पानी हरा दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान रंगीन दिखाई दे रहा है।

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है | बिल्डिंग में काफी सारी खिड़की दिखाई दे रही बिल्डिंग की और --

बाइके खड़ी हुई दिखाई दे रही है और दो लड़के खड़े हुए दिखाई दे रहे है कुछ लोग बैठे और इधर-उधर घूमते हुए भी दिखाई दे रहे है।

बहोत शारी कुर्सियां भी रखी हुई दिखाई दे रही हॉल में एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है नदी का पानी सफेद और काला दिखाई दे रहा है नदी में कुछ पेड़ उगते हुए दिखाई दे रहे है ये काफी बड़ी --

फूलों की मालाएं टंगी हुई दिखाई दे रही हैं सीढ़ियां लगी हुई दिखाई दे रही है काफी सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं लाइट की चमक दिखाई दे रही है ऊपर आसमान काला दिखाई दे रहा है।

का ढ़ेर लगा हुआ दिखाई दे रहा है कुछ टूटे-फूटे मकान दिखाई दे रहा है पेड़-पौधे दिखाई दे रहा है आसमान काला दिखाई दे रहा है मिटटी के ढ़ेर लाल दिखाई दे रहें हैं।

कुछ मकान दिखाई दे रहे है एक मकान पे एस बी आई ए.टी.एम. के बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे मकान के अंदर के महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है और एक --

बहुत सारी बाइके खड़ी हुई दिखाई दे रही है कुछ कार भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

एक नदी दिखाई दे रही है नदी का पानी हरा दिखाई दे रहा है नदी में एक नाव खड़ी हुई दिखाई दे रही है और दो-दो तीन महिलाएं नदी के पानी में --

काउंटर लगा दिखाई दे रहा है काउंटर के पास एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है पंखे लगे हुए दिखाई दे रहा है कैमरे लगे हुए दिखाई दे रहें हैं ए.सी. भी लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

खंभा गड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

पेरे का सभी प्रकार के फूल लगे हुए दिखाई दे रहे है स्टेज पर एक फर्श बिछा हुआ दिखाई दे रहा है जिसपर एक कुर्शी राखी हुई दिखाई दे रही है।

और बहुत सारे तार खींचे हुए दिखाई दे रहे हैं एक महिला पैदल चलते हुए दिखाई दे रही है सड़क के किनारे कुछ झुकी-झोपड़ियाँ बनी हुई दिखाई दे रही हैं और --

एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही बिल्डिंग के ऊपर एक प्लसन का निशान लगाया दिखाई दे रहा बिल्डिंग का कलर पीला दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के सामने --

कुछ ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है आसमान की किरणें सारी पानी में दिखाई दे रही हैं।

कैंप दिखाई दे रहे हैं | कैंप में काफी सारे सारे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे हैं | मूंगफली के पेड़ उगते हुए दिखाई दे रहे हैं | एक जंगल दिखाई दे रहा है | और --

एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है | रेड के छत में काफी सारी लाइटें लगी हुई दिखाई दे रहीं हैं | कुछ बाइकें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं ऑटो रिक्शा खड़े हुए दिखाई दे रहा है सामने कुछ बस --

बड़ी बिल्डिंग है दिखाई दे रही है उपर आसमान में रंगीन दिखाई दे रहा है काफी सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है दो घास और दो वहाँ उगती हुई दिखाई दे रही है | काफी बड़ी टंकी दिखाई दे रही है और ऊपर आसमान नीला दिखाई दे रहा है |

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है | ये बिल्डिंग में काफी सारी वाइट दिखाई दे रही है | फूलें की लड़ियाँ लगी हुई दिखाई दे रही है | एक फूल लगा हुआ दिखाई दे रहा है |

एक सड़क दिखाई दे रही सड़क कुछ कारे दिखाई दे रही | पानी की टंकी राखी हुई दिखाई दे रही है | सड़क --

और एक आदमी चलता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ और कारे भी दिखाई दे रही है सड़क के किनारे कुछ अच्छे घर बने हुए दिखाई दे रहे है खेत दिखाई दे रहे है और --

सारे लोग नदी में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं नदी का पानी --

तीन मंदिर दिखाई दे रहा है | मंदिर में रेड कलर का पेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और मंदिर के सामने भी सड़क दिखाई दे रहे सड़क --